यहां पर सेब एवं कीवि एवं अनानास एवं संतरा भी है।

था यहां पर बहो एक दुकान है जो कुरकुरे यह सभी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और एक पर बैग एवं कुछ कपड़े भी दिख रहे--

जहा पर बहोत सारे बेंच भी लगे हुए हैं तथा बहोत सारे चेयर भी लगे हुए हैं।

का कलर येलो एवं ग्रीन कलर का है।

जिसका कलर व्हाइट एवं रेड कलर का है।

यह एक होल का दृश्य है जहा पर बहोत सारे रेड कलर का कुछ मशीन भी रखे हुए है।

उसका कलर रेड कलर का है।

यहां पर साइड में एक स्कॉर्पियो भी है।

यह एक रोड का दृश्य है।

पर्पल कलर का जैकेट एवं ब्लू कलर का जींस भी पहना हुआ है।

उसके चेहरे पे ब्लर किया गया है।

यहां पर एक डिजाइन किया गया सोफा रखा हुआ है जिसका कलर सिल्वर एवं रेड कलर का है।

जहां पर दाल चावल तथा बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

लड़कियां के भी कपड़ा टागे गये हैं।

बहुत सारे लाइट का कलर व्हाइट एवं रेड कलर का है।